पीछे हमे मोर पंख दिखाई दे रहे हैं सामने पिंक एण्ड व्हाइट कलर की फूलों की माला है बहौत ही अधबुद्ध द्रश्य है ये।

काफी पिल्लर्स बड़े भी हैं देखने से तो ये किसी जगह का न कोई नक्शा लग रहा है और बिल्डिंग्स का जो है एरिया दिखाई दे रहा है मॉडल --

स्टेज के ऊपर कुछ गर्ल्स हमे डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं बहोत अच्छे से ये रेड एंड ब्लू कलर का ड्रेसअप किया हुआ है बहोत अच्छे से ये अपने आप को उन्होंने तैयार किया हुआ है।

रूम में काफी सारे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं और हमें ये किसी होटल का जो है व्यू दिखाई दे रहा है।